इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है एक तालाब जिसमें हमें तीन लकड़ी की नाव दिख रहे हैं उसमें से दो नाव डूब चुकी हैं।

यहां पर हमे एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने हरा कुर्ता पहना हुआ है उसने सफेद टोपी लगाई है यहां उसके दुकान में बहोत सारी चीजे दिखाई दे रही हैं।